जैसे में देख लीजिए मंदिल है। सामने के साइड में फिर उसके बाद पीछे देख लीजिए मंदिल है। उसके बाद बहुत हरा-भरा फुल गाछ लगा हुआ है। जैसे में देख लीजिए --

जैसे में देखिए यहां पर बाइक है एस.बी.आई. बैंक है ए.टी.एम. है और जैसे में त पूरा बाइक टाइप लगा हुआ है। जैसे में उधर आगे देख लीजिए बैंक है सामने में।

जैसे में देखिए यहाँ पर हेयर स्टाइल कटता है जैसे में बाल बहुत बढ़िया कटा हुआ है देख लीजिए आपलोग अच्छा से आप लोग भी आ सकते है कटाने के लिए भी हो सकता है।